यहाँ पर आपको टीन दिखाई पड़ रइ टीन लगी हुई है व्हाइट कलर की यहाँ पे कुछ ब् छोटी छोटी घास दिखाई पड़ रही दीवाल से अटैच हुई है बड़े बड़े घ से पेड़ दिखाई पड़ रे दीवाल का कलर थोड़ा सा ग्रे कलर है दिखाई पड़ रा है।

यहाँ पर देखिए आपको बहुत वील की चेयरस दिखाई पड़ रही है।

यहाँ पर देखिये एक डॉग दिखाई पर रहा हैं देखिये डॉग के ऊपर ग्रीन कपड़ा बिछाया गया हैं और यहां पर डॉक्टर लोग डॉग की सर्जरी कर रहे हैं देखिये यहां पे वाइट कलर का डॉग हैं यहाँ पर बहुत सारा इंजेक्शन हैं यहाँ पे सामने ऐ.सी. लगे हुए दिखाई दे रहे यहाँ पे दीवारो की कलर वाइट में दिखाई पर रहा हैं।